एक रोड पे बस जा रहा है जिसका नाम लिखा हुआ है उसे पे बंदीपुर टाइगर रिजर्व ।

नया ड्रेस पहन के यूनिफॉर्म में--

उपर में राधा कृष्ण का फोटो है।

सामने में एक कंक्रीट प्लांट है जिसका एक पार्ट गड्ढा में है और वहीं से एक और लंबा सा पार्ट बाउंड्री के उस पार निकला हुआ है।

इधर में कुछ मिट्टी जैसा पड़ा हुआ है।

अगल बगल दुकान है और आगे किसी चीज का मूर्ति जा रहा है शायद।

ये कोई एयरपोर्ट का पिक है शायद।

वहा लिखा हुआ है इमीग्रेशन ।

यहां पे कुछ लोग स्टेज पे है।

ये कोई यूनिवर्सिटी का पिक है जिसके बाहर बहोत सारे बच्चे लोग खड़े हैं।

पांचों का डिजाइन सेम है बट कलर अलग है।

वहीं पे झंडा गड़ा हुआ है ऑरेंज कलर का--

अ ऊपर में लाइटिंग किया हुआ है।

ये पिक्चर कोई कॉलेज का है।

पेप्सी का कंटेनर भी रखा हुआ है जिसमें पेप्सी रखते हैं पी कर।

इस पिक्चर में ऊपर का सीलिंग व्हाइट है और बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं लाइट लगे हुए हैं।

सामने एक टेबल है और एक ऑफिस चेयर है और जो कभर किया हुआ है और उसके ऊपर एक गमछा रखा हुआ है।

अम उसके बाहर बहोत सारा गाड़ी है कार है जे_सी_बी है।

एक बस लगा हुआ है और उसके ऊपर कोई खड़ा है आदमी--

यह पिक कोई रिलिजियस प्लेस का है इसके बाहर का जो डोर है वो ग्लास का है और दोनों तरफ पुश लिखा हुआ है।

ये एक रूम है जिसके ऊपर का रूफ सीमेंट सीट का है।

यह कोई शिव मोटर ट्रेनिंग स्कूल है।

यह मैट्रिक सिक्योरिटी सर्विसेज है।

सामने से एक गेट दिख रहा है जिसमें दरवाजा लगा हुआ नहीं है और उधर से रोशनी आ रहा है।

बगल में घर है पेड़ पौधा है और कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

दो आदमी बैठे हुए हैं कोई किसी चीज में लेकर बहुत सारे मछली को।

नीचे में ग्रीन कलर का मैट है और ऊपर में कावेरी कनाडा लिखा हुआ है।